इस चित्र में हमें भगवान जी की मूर्ति दिखाई दे रही हैं (है) जो कि काफी पुराने समय की मालूम पड़ रही है। मूर्ति के ऊपर हम देखे तो हमें लाल कलर की चुनरी भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें हनुमानजी की फोटो दिखाई गई है। हनुमानजी की फोटो के साथ-साथ इस पे लाल कलर की चुनरी भी चढ़ी हुई है।